ये किसी का मकान है वाइट कलर का। इसमें जंग शीशे का खिड़की लगा हुआ है। औ नारियल का दो बड़ा-बड़ा पौधा है। उसके बगल में छोटा-छोटा बहुत सारा पौधा लगा हुआ है। बगल में स्टील का पूरा चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है। सड़क है।

ये कोई मकान है बहुत भव्य मकान है इसके इसके पिल्लर सब बहुत सारा पिल्लर हैं इसकी गेट के पास दो पोधा बड़ा-बड़ा पोधा लगा हुआ हैं उसके ऊपर एक लाइट वाईपर लगा हुआ है उसके ऊपर गणेश भगवान का फोटो है उसके बगल में बहुत बड़ा-बड़ा --

एम.आर.पी. का कुछ बोर्ड लगा हुआ है। उसके ऊपर पीछे में एक पीला कलर का बहुत बड़ा मकान --